यह एक पार्क है पार्क में कुछ झूले लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के आइटम्स लगे हुए हैं।

यहां पर अनिल ढाबे वाला गाड़ी को ठोकता है।